बिजली विभाग की गेट के सामने एक साइकिल खड़ी है और इसके पास में काफी सारी बाइक खड़ी है।

ये एक बैंक है इस बैंक का नाम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है और यहां पर --

दो आदमी खड़े हैं और पास में एक लड़का खड़ा हैं और तीन औरतें खड़ी हैं।

घास भी है ये बहोत ही अच्छा है।

और इसके सामने बहोत ही मन को आकर्षित करने वाले दृश्य लगा रखे हैं।

इसके बेड लगा हुआ है और बेड के ऊपर एक सफेद कलर की चद्दर रखी हुई है।

इस मेडिकल के काउंटर के पास एक आदमी खड़ा है उसके हाथ में चोट लग रखी है।

और उसके सामने एक एक्टिवा पर एक आदमी हेलमेट लगाकर --